एक नंबर प्लेट हैं जिस में सी. जी. लिखा हुआ हैं और उसमे जीरो प्वा जीरो चार जे. एफ. उन्यासी इकहत्तर लिखा हुआ हैं।